व्यक्ति का पत्र एक स्थान से दूसरे अस स्थान तक पहुँच जाता है इसके माध्यम से।

और दो लड़की हाथों में दिये लिये हुए खड़ी है और भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं।

यह है एक घूमने का स्थान है जहाँ पर व्यक्ति घूमने के लिए आते है और यहां पर रेस्ट करते है।

यह फूलों की मालाएं हैं जिसमें गुलाब के फूल गेंदा के फूल हैं और अनेक प्रकार के फूल हैं।

यह एक रेस्टोरेंट हैं और जिसमें व्यक्ति खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना खाते हैं।